बस दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है और यहाँ पर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें अलग-अलग प्रकार के कपड़े पहने है रंग-बिरंगे कलर के और यहां पर एक बस खड़ी है और यहां पर बिल्डिंग भी है और मार्केट भी दिखाई दे रहा है। बहोत बड़ा --